ये एक नदी है जिसमें दो आदमी दो आदमी खड़ा हुआ है।

और पीछे में एक घास भी है एक पेड़ भी हैं और बदल भी है।

पीछे में एक बड़ा से एक टेम्पल भी है।

और पीछे में और एक घर है और बहोत सारे पीछे में बहोत सारे और और एअर लाइक अ हॉट --

यह एक रेस्टोरेंट है। जिसमें ऊपर में च लाइन से बोतल खड़ा हुआ है। सामने में एक गिलास है।

भहुआ के सामने में एक सामान का सलेख लिखा हुआ है।

बहुत सारे इंसान हैं जो बैठे हुए हैं और ऊपर में और बहुत सारे कपड़े हैं।

और गाय का कलर काला है और छोटा का ब्राउन कलर है।